एक बाजार जोकि पूरे ब्लू और ऑरेंज कलर का लिखा हुआ है।

जहां की तीन मरीज बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के सामने --

पेड़ पौधे हैं और रस्ते में दो आदमी दिख रहे हैं।

मंदिर के सबसे ऊपर में लाल कलर का झंडा लहराया जा रहा है।

ये कोई बस स्टेशन लग रहा है।

ये एक स्टेशनरी शॉप है।

हाथों में ग्लव्स भी है।

ग्रीन कलर का बॉर्डर है।

दो चार पांच बस है फिर एक ट्रक है।

एक बैठने की जगह जोकि रेड कलर का है टेबल जोकि ब्लैक कलर की है।

चार पांच दस बारह तलवार दिख रहा हैं ।

कुछ पचास साठ साल का होगा।

एक सी_सी_टी_वी सबसे नीचे वाले सेल्फ में है और बहोत सारे सी_सी_टी_वी जो की बॉक्स के अंदर है।

बाहर में दिखाया जा रहा है ट्रक है जो कि येलो कलर का है।

दस से ज्यादा पिलर्स है।

पिलर का रंग हल्का काला हो गया है।

एक बेड है एक अलमारी है एक कुर्सी है।

एक शोरूम है शोरूम का नाम है मान्यवर।

शर्ट सब है रेड ऑरेंज ब्ल्यू ग्रीन ब्राउन ।

एक शादी का हाल है।

बाइक है साइकल है रेड कलर की टोकरी है और चिप्स वगैरा भी है।

दो फ्लोर दिखा रहा है।